ये उन्होंने पहना है येलो कलर का जैकेट और अंदर पहना है ग्रीन और ब्लैक कलर का चेक टी शर्ट ।

बहोत सुंदर सी नजारे हैं।

शायद किसी धार्मिक सभा या प्रार्थना में भाग लेने आ रहे--

इस इमेज में एक वुडन फ्रेम के अंदर छोटी छोटी मुर्गी के बच्चियां दिखाई पड़ रहे हैं।

एक्सटेंशन जो है ब्लैक कलर का दो चेयर जो है रेड कलर और ब्लैक कलर का एक--

इस तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है दो ट्रक जिसमें से एक ट्रक व्हाइट कलर का है दूसरा ट्रक है रेड कलर का।

इसमें लिखा हुआ है वन स्टॉप शॉप फॉर द बेस्ट ट्रैवल डील्स ।

चिप्स कुरकुरे मिनी और नीचे भी दिखाई पड़ रहा है आलू।

का बॉक्स है ओनियन है।